मालूम नहीं क्या चीज का है इसे एक --

रूम है बहुत सुंदर है बहुतत --

मालूम नहीं क्या-क्या हो रहा है ऑफिस में हमको मालूम नहीं है माय --